हमें एक सफेद रंग की कार नजर आ रही है | साथ ही उसके पास में हमें और भी कार दिख रही हैं | हमें एक पेड़ दिख रहा है जिसके तने को सफेद रंग से रंगा हुआ है |